इसमे कुर्सिया दिख रही है। पेड़-पौधे दिख रहे है।

लाइट के खंबे दिख रहा है। सूरऊर्जा प्लेट दिख रही --

यह एक मेला बना हुआ दिखाई दे रहा --